ये मिठाई के लिए एक काउंटर र लगा रखा है काउंटर के साथ ही सरदार जी खड़े हुए हैं।

अंधेरा भी बहुत हो चुका है इसमें और कई लोग बाहर आ रहे हैं कई अंदर जा रहे हैं।

बिल्डिंग के नीचे ही एक ज्वेलर्स सिटी ज्वेलर की शॉप दिखाई दे उसके बाहर की स्कूटी खड़ी हुई पार्किंग के लिए।

और ये स्कूटी का शोरूम है। सुजुकी मोटर का शोरूम हैं।

यहां से ट्रेन कालका से आती है और चंडीगढ़ दिल्ली के लिए जाती है।

सामने एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

वो दो रास्ते पार्क की तरफ जा रहे हैं एक अंदर की तरफ एक बाहर की --

जिसमें कुछ पौधे और पेड़ पौधे और पत्ते लगे हुए हैं।

और साथ में हरे रंग की चद्दर बिछा रखी दो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं एक टेबल है टेबल के साथ ही एक पानी की पाईप --

इस गेट से मंदिर के अंदर की तरफ जाते हैं लोग।

सीन दिखाई दे रहा है और ये वॉशिंग सेंटर बेसमेंट पर बना--

और वो कुछ पेंटिंग कर रहे और मैडम उन्हें बता रही है कि कैसे कर--